इस इलाका के चारो तरफ बहोत सारे छोटे-छोटे दुकाने भी हैं और सड़क भी है।

ये हमारे इलाका का एक जुगासन सेंटर है। इस जुगासन सेंटर --

पचास छोटा-छोटा दुकान भी है यहाँ पर मिट्टी के सामान मिलता है घर सजाने के भी सामन मिलता है यहाँ पर ढेर सारे कप्स मिलता है।